एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ हे। आस पास काफी बड़े- बड़े पेड़ लगे है। अ पकी जमीन है।

आ एक बड़े बड़े यहा पे बोर्ड लगे हुवे है सामने की तरफ बड़े बड़े पेड़ है स्टील के पाइप लगे हुवे है कुछ लोग खड़े हुवे है कुछ दुकाने खुली हुई है आ गाड़िया खड़ी है।

उस के उपर टाइल्स लगे हुवे है कुछ बैरी गेट्स लगे हुवे है जो की लोहे के है कुछ छोटे छोटे मकान बने हुवे है बड़े बड़े पेड़ लगे हुवे है।